इस फोटो मे एक साइकिल की दुकान नजर आ रही है जिसमे एक आदमी साइकिल पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने काले शर्ट और मुह पर मास्क लगा हुआ है वो टकला आदमी है और इसमे बहुत सारी साइकीले रखी हुई है।

इस फोटो मे स्टेज के ऊपर फोटो खिचाती हुई औरते नजर आ रही है जिसमे छोटी बच्चियाँ भरतनाट्यम अ ड्रेश परफोमन्स मे सजी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे कुछ आदमी खाना बनाते हुए दिखाई दे रहे है एक आदमी कढ़ाई के पास खड़ा हुआ है।

पहाड़ के बीचों बीच एक सुरंग में से एक लड़का उंगली दिखाता हुआ नजर आ रहा है एक लड़के के गले में उसने हाथ रख रखा है एक आदमी का जूता दिखाई दे रहा हैं ।

फोटो में एक एंट्री गेट दिखाई दे रहा है जिस पर एक सुरक्षा गार्ड बैठा हुआ है और सुनहरे कलर की गुमडनुमा डेकोरेशन यहाँ पर की गई हैं।

फूल मालाओं से बहोत सुंदर ही इसकी डेकरैशन करी गई हैं ।

बच्चे एक दूसरे के घुटने पर पैर रख कर ऊपर खड़े हुए हैं पीछे नीले कलर की दीवाल और जालीनुमा स्क्रीन दिखाई दे रही हैं ।